ऊपर नीला आसमान दिखाई दे रहा है| नीचे मट्टी का रोड दिखाई दे रहा है| आस पास कुछ लोग खड़े हुए हैं| यहाँ एक कुछ सीढ़िया भी दिखाई दे रही है जो के एजेंसी के उप जाती हुई--

आस-पास कुछ शेड वाले घर दिखाई दे रहे हैं| बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं कुछ पहाड़ दिखाई दे रहे हैं| ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है नीचे दिखाई दे रही है।

यह एक मोटेर एजेंसी की अ शोरूम दिखाई दे रही है| यहाँ कुछ अ बाइक और अ कुछ वाहिकल्स दिखाई दे रहे हैं।

दो बाइक खड़े हुए हैं| ऊपर नीला आसमान दिखाई दे रहा है नीचे फ्लोर दिखाई दे रहा है।

इसमें एक रास्ता है जिसके सामने हमे उम-उम- कुछ अ गाड़ियाँ खड़ी दिखाई दे रही है| एक बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है एक सुखा पेड़ है एक खंभा है| यहाँ एक सफेद बिल्डिंग है| यहाँ पे सामने मे एक व्हाइट पट्टी भी दिखाई दे रही है।

यहाँ एक चबूतरा बना हुआ है जिसमे हम पेड़ की छाऊ ले सकते हैं जिसके सामने एक मट्टी की सतेह है| ऊपर नीला आसमान दिखाई दे रहा है| इसके पीछे सड़क पे एक बहोत ही बड़ा तालाब दिखाई --

पेट्रोल पम्प का द्रश्य है| इसके आस-पास कुछ बड़े वाहन जेसे बस और ट्रक दिखाई दे रहे हैं| यहाँ कुछ मशीन दिखाई दे रही है।

यह एक बोहोत ही सुंदर द्रश्य दिखाई दे रहा है| इसमे ऊपर नीला आसमान दिखाई दे रहा है।

यहाँ एक लैक है झील है| फिर एक तालाब बड़े तालाब का द्रश्य है जिसमे ऊपर नीला आसमान दिखाई दे रहा है| नीचे भरा हुआ पानी दिखाई दे रहा है।

नीचे टाइल्स लगी हुए है| आस-पास कुछ लाइटे लगी हुई है और इसका इन्टीरीअर बोहोत ही सुंदर डिसेंट सा है।

यहाँ कुछ सीढ़िया दिखाई दे रही हैं जो की पार्क पे आने के लिए रास्ता प्रतीत हो रही हैं यहाँ कुछ पेड़ पौधे लगे हुए हैं जो की बहुत खूबसूरत लग रहे हैं।